देख सकते हैं यहां पर बहुत सारे पेड़ है।

बहुत ही प्यारा सा चित्र दिख रहा है।

आप इस पिक्चर को भी अच्छे से देखिए।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

और यहां पर हम देख सकते है यहां पर एक डस्टबिन भी है जो कि --

अपने शिक्षा के माध्यम से देख पा रहे हैं इसमें क्लीयरेंस लिखा हुआ है।